पीछे कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है एक मीटर लगा हुआ दिख रहा है साइड में एक शटर लगा हुआ दिख रहा है।

दीवाल पर और भी बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है एक स्विच बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

नीचे एक रोड भी डला हुआ है कुछ कपड़े भी डला हुआ है एक बड़ा सा खम्मा भी लगा हुआ है कुछ लाइट भी लगा हुआ है।

और इसमें कुछ मिट्टी भी डली हुई दिख रही है कुछ लकड़ियां डली हुई है और कुछ सूखे पत्ते भी डले हुए दिख रहे--